और इसके बाहर एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी हुई है।

यह एक मोटरवे है जिसके दो रोड है एक --

बहौत सारे लोग यहाँ पे अपने घर के इस्तेमाल करने के चीज़ें लेने आए हुए हैं।

यहाँ पे हमें यहाँ तो फर्स्ट कलर आ रहा है वो लाइट से कलर का है।

सुरख रंग का और भूरे रंग का पेंट किया गया है और इसमें बोहोत सारे सतून नजर आ --